आइटम्स रखे हुए हैं और यहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

अ सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी लगी हुई है नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है।